ऊपर की तरफ एक बोर्ड भी है।

दिखाई गई तस्वीर किसी मोबाइल शॉप की प्रतीत हो रही है।

यह हॉल बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत है |

पीछे की तरफ एक ईट की दिवार बनी हुई है जो सफ़ेद रंग की है।

और यह बैंक की तस्वीर है।--

है एक नीचे बीच में और ऊपर। बस फव्वारा अभी बंद है।

इस तस्वीर में हम देख सकते है की पीछे की तरफ एक मस्जिद नजर आ रही है।

एक बड़ा सा दरवाजा दिख रहा है।

गमले भी दिख रहे हैं जिनमे पौधे भी लगाए गए हैं |

बहुत सारे गमले हैं जिनके अंदर सुन्दर सुन्दर पौधे लगे हुए हैं |